में बहुत सारा पानी रुका हुआ नजर आरहा है पानी कलर हमें काला दिखाई दे रहा है साथ ही साथ हमें यहा एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी दिखाई दे रह है पहाड़ी के ऊपर हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहा है जो की बहुत दूर दूर तक फैले हुए नजर आरहे

हमें यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगे भी दिखाई दे रही है बिल्डिंगे कलर हमें सफ़ेद नजर आरहा है हमें यह पर के पानी की टंकी भी नजर आरही है पानी के टंकी का कलर यहाँ पे काला दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पर एक रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है|

एक बहुत ही बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रही है। पेड़ हमें बहुत दूर दूर तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है। घर का कलर हम यहाँ पर लाल नजर आ रहा है।

ऊपर एक बहुत सारी पहाड़े दिखाई दे रहे है पहाड़ के साथ साथ हमें यहाँ पर बहुत दूर दूर तक फैले हुए दिखाई दे रहे है जोकि हरे भरे नजर आरहे है साथ ही साथ हमें यहाँ पर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

यहाँ बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ऊपर के दिवार का कलर हमें यहाँ पर कत्था और लाल दिखाई दे रहा है साथ हे साथ हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है बोर्ड का कलर हमें लाल और सफ़ेद दिखाई दे रहा है उसके निचे हमें एक बहुत ही

बहुत सारी दुकानें दिखाई ऍम नजर आ रहा उसका ऍम यहाँ पर इकट्ठा दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑटो दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे--

बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग की दिवार का कलर हमें यहाँ पर सफ़ेद दिखाई दे रहा है उसपे हमें बहुत साड़ी बोर्ड लगी हुई नज़र आ रही है बोर्ड का कलर हमें यहाँ पर--